यह फोटो एक बुलेट की है जो हरे भरे खाली जगहों में ख़ड़ी की गई है |

यह फोटो एक ट्रैक्टर की है ट्रैक्टर हरी नीली रंग की है जो एक पेड़ के नीचे खड़ी है।

ट्रैक्टर का प्रयोग खेत की जुताई बुआई में की जाती है ट्रैक्टर से खेत जोतने के बाद उसमें फसल की बुआई की जाती है।

बुलेट ही बुलेट दिखाई दे रही है।

यह फोटो एक कंस्ट्रक्शन एरिया की है जहाँ भवन का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है |

यह फोटो एक फल के स्टोर की है जहाँ ढ़ेर सारे फलो को सजा के रखा गया है।

दूसरी बॉलिंग करने के साइड भी एक स्टंप तैयार किया गया है।

यह फोटो दो गाय और बछड़े की है जो अपने हौदी में चारा चरते हुए नजर आ रहे हैं |

यह फोटो एक कार की है कार का बोनेट खोल कर एक व्यक्ति रेपैरिंग करता दिखाई दे रहा है।

उसके हाथ में रेपैरींग करने वाली कुछ मशीन है | कार की कार यह इस कार के अलावा भी सारी कार गाडियाँ खड़ी की गई हैं।